पीछे की तरफ कोई एक एंट्री डोर है।

रिसेप्शन काउंटर पर एक कुर्सी और एक टेबल भी पड़ा हुआ है।

अर्टिगा के ऊपर सी_एन_जी का स्टीकर भी लगा है।

पहाड़ की दूसरी तरफ दो एंटीना नजर आ रहे हैं।

पहाड़ के नीचे की तरफ कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

कुछ दुकानें जैसे कि मेडिकल बेकरी कलर की दुकान ऐसी कई दुकानें हैं।

दुकानों के आगे कुछ टू व्हीलर गाड़ियां भी खड़ी है।

साड़ियों के नजदीक में दो आदमी भी नजर आ रहे हैं।

दीवार पर माता जी की फोटो है उस पर हार चढ़ा हुआ है।

आगे की तरफ एक सीढ़ी और कुछ कार्टून बॉक्सेस पड़े हैं।

पर एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

सड़क की दूसरी तरफ दीवार है दीवार के अंदर की तरफ कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

सामने बड़े बड़े चार झाड़ भी नजर आ रहे हैं।

पीछे की तरफ बिजली के कुछ खंबे लगे हैं।

दरवाजे के आगे एक पानी की बॉटल पड़ी है।

एक घर के बाहर नीले कलर का नोटिस बोर्ड लगा है गाड़ी के पास एक पीले कलर का गेट भी है।

घर की छत पर एक पानी की टंकी भी लगी है।

दुकान के आगे की तरफ एक मटका भी है।

ये एक हिल स्टेशन है हिल स्टेशन के पास में बहोत सी हरियाली है।

हरियाली के पीछे की तरफ कुछ छोटे छोटे घर भी नजर आ रहे हैं।

ये एक तलाव है तलाव के पास एक सुखी जगह भी है।

पीछे मगरमच्छ के एक पेड़ भी लगा हुआ है।

ये एक गुफा या तो खंडहर सा है।

एक बिल्डिंग के पास हरे कलर का पेड़ भी है।

जमीन पर कई सारी लकड़ियां भी पड़ी हुईं है।

लड़कियों के ऊपर कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं।

घर के ऊपर श्री ओधवा राम रेसीडेंसी लिखा हुआ है।

द द दरवाजे के बाहर एक सैनिटाइजर का स्टैंड और एक बैग भी पड़ा हुआ है।

एक तरफ बास्केटबॉल का कोर्ट भी है एक तरफ लटकने के लिए झूला भी लगा हुआ है।

ट्रक के ऊपर सामान भी लोड हो रहा है।

ग्राउंड के ऊपर कुछ और एक ऑरेंज ऑरेंज ग्रिल सी बनी हुई है।

बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है।

बैंक का लोगोस सफेद और लाल कलर में है ऊपर की तरफ दरवाजे और खिड़कियां बंद है।

बिल्डिंग की सिड़ियों के पास एक गोलेवाला भी एक अपनी लारी लेके खड़ा है।

बिल्डिंग के बाहर की तरफ कुछ टु व्हीलरस भी खड़ी है।

ये एक घर है घर में एक एल शेप सोफा भी है।

इसके आगे एक दीवार भी नजर आ रही है।

सड़क पर कुछ आदमी चल रहे हैं।

ये एक छोटा सा गार्डन या तो लॉन है।

यह एक रेस्टोरेंट या तो होटल की पार्किंग है।

पार्किंग में ढेर सारी गाड़ियां भी लगी हुई हैं।

एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है।

ये एक गुफा है गुफा ब्राउन कलर की है।

सीढ़ी एक तरफ कुछ सफेद चौक से कुछ लिखा हुआ है।

गुफा के ऊपर की तरफ कुछ पेड़ भीं लगे हुए हैं।

मंदिर के आगे की तरफ एक पाइप लटक रहा है।

इसके पास की सेल्फ पर बहुत सारे रंग-बिरंगे डब्बे पड़े हैं।

बिल्डिंग की दीवार पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा है।

ये एक गुफा या तो कोई झरने की जगह है।

गुफा के अंदर एक लकड़ी के ऊपर कुछ बना हुआ है।

गुफा के आसपास कई सारे पत्थर भी है।